कार का नंबर यू.पी पैसठ टीएच अड़तीस तीन जे है और ये कोई सोसाइटी है। कार वाइट रंग की है और सिजूकी की कार है।

यह किसी झील का फोटो है जहाँ पे कुछ अ-लड़के और लड़कियाँ जल विहार करने और बोटिंग करने का आनंद उठा रहे हैं। पीछे एक गाइड बइठा हुआ है जो उनको सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है और लोग यहाँ पर मजे कर रहे हैं।

और इसमें हम देख सकते कि एक छोटी खिड़की बनी हुई है जिसमें से आप अंदर कमरे में प्रवेश कर सकते है। सामने की जो दीवारें है वो सब पुरानी हो चुकी है और वो पीले रंग की है।

यह किसी बांध का फोटो है | जिसके बगल में कुछ कार्यालय बने हुए हैं | बांध अभी खोला गया है| अम पानी के बहाव को अच्छी तरह देखा जा सकता है| और यहां पर बांध को खोलने के लिए ऑफिस में जाने का रास्ता भी दिखाई दे रहा है|